चित्र में एक टेबल दिख रही है।

टेबल पर एक हुक्का रखा हुआ है।

सामने तालाब दिखाई दे रहा है।

मस्जिद का दरवाजा ग्रीन कलर का पुता हुआ है।

यह एक चित्र है चित्र एक--

पीले रंग के मीनारे लगे हुएं हैं।

टैंकर पे भारत पेट्रोलियम लिखा हुआ है।

उसने ब्लैक रंग के कपड़े पहने हुए हैं।

सड़क पर बहुत सारी धूल फैली हुई है।

चारों ने अलग-अलग रंगी कलरफुल साड़ियां पहनी हुई हैं।

चित्र में एक बड़ी सी कार दिखाई दे रही है।

कांच में बहुत सारे केक पेस्ट्री और सैंडविच रखे हैं।

बाहर बहोत सारी गाड़ियां सड़क पे से जा रही हैं।

ये एक चित्र है चित्र एक स्टेडियम का है।

गार्डन में सफेद कलर की टेबल बनी हुई है।

बहुत सारे सूखे पत्ते फैले हुए हैं।

गार्डन के आसपास बड़े-बड़े पेड़ लगे हुए हैं।

बाहर बहोत सारे डमी खड़े हुए हैं।

पुल के पास जालियां दिखाई दे रही हैं।

एक लाइट का खंबा भी दिख रहा है।

पर मजदूर दिखाई दे रहे हैं।

इसका नाम हरे राम धर्मशाला है।

पीछे सफेद कलर की इमारत दिखाई दे रही है।

लड़के ने येलो रंग की टी शर्ट पहनी है।

छत पर गुब्बारे दिखाई दे रहे हैं।

ऊपर बड़ा सा पंखा लगा हुआ है।

चित्र एक मस्जिद के अंदर का है।

यहां सफेद रंग की मीनारे बने हुए हैं।

एक बड़ा सी सीनरी बिल्डिंग के ऊपर लगी हुई है।

ये एक चित्र है चित्र एक बगीचे का है चित्र में बहोत सारे पेड़ की कुंडिया नजर आ रही है।